यहाँ पे बहोत बड़ा कपड़े का शो दुकान है वहाँ पे बहोत सारे कपड़े लटकाएं हुए हैं बहोत सारे रंग बिरंगे टी-शर्ट्स है और यहाँ पे बहोत सारे लाइट्स लगे से हुए हैं और पूरा --

वहाँ पे सा बाजू में एक टोकरी भी दिख रहा है और गाय लोग गाय के सामने एक बकेट है और उसके बाजू में अ लकड़ियां है और जमीन साफ-सुथरा --

बहोत बड़ा पंडाल दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ शादी और कुछ पूजा होने का संभावना दिख रहा है यार यहाँ पे इतने लोग सज-धज के खड़े हुए से दिख रहे हैं।